हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही--

नदी जैसा थोड़ा थोड़ा कीचड़ है।

एक बॉटल दिखाई दे रही है।

और कॉफी कलर और क्रीम कलर में पेंट हुआ है कमरे --

यहां छोटे छोटे गेड बने हुए हैं।

उस पर बहोत सारे गुम्बचे बनी हैं।

जहां छत पे डिजाइन बनी है लकड़ी की। छोटी छोटी लाइटें लगी हैं।

ये एक रोड है जिसकी जमीन पत्थल की है।

हेल्मेट रखा हुआ है एक कूलर है उस पर कुछ सामान रखें हैं।

एक टैक्सी है हरे कलर की।

पेड़ लगे हैं हरी हरी घास निकली है।

कार दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

बैनर लगा है ब्लू कलर का।

एक आदमी स्कूटी लिए उसपे बैठा है।

कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं।

उसके बाजू में एक खिड़की दिख रही है।

फिर उसके बगल में एक शेटल है।

एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसपे एक टेबल है।

रंगे हैं जिसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर के--

और बहोत सारे लाइटें जल रही है।

एक आदमी फोन से बातें कर रहा है।

बहोत सारे गद्दे बिछे हैं।

छत बनी हुई है टाइल्स पे और छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं।

कुछ लोग खड़े हैं दुकान में एक आदमी हेलमेट पेहने खड़ा है।

औ बहोत सारे खंबे खड़े हैं।

ऊपर टीन डली हुई है।